यह एक पहाड़ है यह पहाड़ बहुत बड़ी है यह पहाड़ में बहुत बड़े-बड़े चट्टान है इस पहाड़ में बहुत बड़े-बड़े पैर लगे हुए हैं बहुत सारे आदमी यहाँ पे घुमने के लिए आते हैं काफी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं ।

ये एक जिम है ये जिम में बहुत बड़ा है यह जिम में बहुत सारे लड़के यहाँ पे वजन कम करने के लिए --